व हम तें एक पक्का डुंगा मा खडू दिखेण लग्युं ओर पोर हम तें छोटा छोटा हरयाँ हरयाँ घासन जमा दिखेणा पिछाड़ी हम ते बड़ा बारीक डाला दिखेण लग्यां जो कोई कुलें का कोई भिमल का।